और पानी पानी एक मात्र आ ऐसा है कि जी जी जिसे हम बिना आ जिसे

हमें अपना देश का नाम रोशन करना चाहिए।

हमें अपने देश को स्वाच रखना चाहिए साफ़-सफ़ाई रखनी चाहिए गंदगी नहीं करनी चाहिए और इधर-उधर जो कूड़ा है उसे हम डस्टबीन में डालना चाहिए और जिस कारण हमारा देश स्वाच रहे और हम सब हेल्थी रहें।

और यहाँ पे टीचर इनका स्वागत कर रहे हैं परंतु यहाँ बच्चे देखो यहाँ पे एक पीडी स्पूट वाली मैडम है वो है।

टीचर है यहाँ पे बच्चे मैडम को प्रणाम कर रहे हैं।

काटा शायद उनमें ज्यादा वजन है और एक कुछ तोल रहे हैं और यहाँ पे दो-तीन मजदूर हैं सात आठ मजदूर हैं जो कार्य कर रहे हैं।

दो तीन बहुत से एक दो मैडम एक मैडम उसके साथ है सफेद कपड़ा वाला एक --

कई लोग आ-आ-आ-जा रहे हैं और बहोत सारे लोग हैं और एक आंटी है जो आ से मच्छी ले रही है। एक दो आंटी है जो मच्छी ले रही है।

हाँ यहाँ पे एक घर है और मंदिर है शायद और यहाँ पे बहौत सारे पेढ़-पौधे लगे हुए हैं ये मंदिर वाइट-वाइट कलर का है।

और यां बोहोत लगे हुए हैं और यहाँ उम्म्म --